सवेरे आसमान दिख रहा है पेड़-पौधे जो है दिख रहे है नीचे के साइड जो है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है पानी दिख रहा हैं भरा हु --

और ये काम चल रहा है ए नीचे जो है घास पड़ी हुई दिख रही है कचरा दिख रहा है जमीन पर साइड में जो है पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ जैसे।